यह किसी मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे सामने की ओर एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है।

और पीछे की ओर एक लाल कलर का पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं और बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे सामने की ओर एक आदमी--

पास ही में बहुत सारी रिपेयरिंग के मशीनें और औजार भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कैंपस की फोटो दिखाई दे रही है जो कि किसी बिल्डिंग के बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जो की कच्चे ईंटों का बना हुआ नजर आ रहा है यहां पे पीछे की ओर एक लोहे का दरवाजा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ये किसी बिल्डिंग के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जो कि शायद किसी कार्यालय ऑफिस के बाहर की फोटो है।

यहां पे कुछ अलग तरीके की बेले लगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर एक बड़ा सा काले कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे रॉयल कैच लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

जहां पे एक सर्कल बना हुआ है जिस पे एक चौकोर काले कलर के मार्बल से बॉक्स जैसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।